और इसमें लोग बाहर कुर्सियों में बेठे हुए हैं और एक आदमी बाल कटवाने के लिए कुर्सी में है।

ये तस्वीर किसी मछली बाजार की है जहां पे बहोत सी बड़ी-बड़ी मछलियां तथा कुछ कीड़े --

यह एक मेले की दुकान है यहाँ पे बहुत सा सामान देवी देवताओ का मिल रहा है।